दिखाई दे रहा है ब्लू टाइप का कुछ बनाया हुआ है।

यह एक ऐसा दिखाई दे रहा है देखने से लग रहा है कि--

एक यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

देखने में काफी सुंदर यह दिखाई दे रहा है।

और काफी सुंदर भी इसमें फूल जैसा लगाए गए हैं।

यह एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से तो लग रहा है कि यह किसी मॉल का दृश्य है।